लिबर ऑफिस इंप्रेस के परिचय पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे लिबर ऑफिस इंप्रेस का परिचय
इंप्रेस में विविध टूलबार्स
नई प्रस्तुतिप्रज़ेन्टैशन कैसे तैयार करें
एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण के रूप में सेव कैसे करें
एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण को ओपन कैसे करें
और इंप्रेस में पीडीएफ डॉक्युमेंट कैसे एक्स्पोर्ट करें
लिबर ऑफिस मैनेजर लिबर ऑफिस सूट का प्रस्तुतिकरण मैनेजर है
इसका उपयोग सशक्त प्रस्तुति को तैयार करने के लिए किया जाता है
यह माइक्रोसाफ्ट ऑफिस पावरप्वाइंट के समतुल्य है
लिबर ऑफिस इंप्रेस फ्री ओपन सोर्स साफ्टवेयर है उपयोग और वितरण के लिए निशुल्क उपलब्ध है
लिबर ऑफिस सूट के साथ शुरूआत करने के लिए
आप या तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 और इसके उच्च वर्जन्स जैसे विंडोज एक्सपी या एमएस विंडोज 7 का उपयोग कर सकते हैं या आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में gnuलिनक्स का उपयोग कर सकते हैं
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट संस्थापित नहीं है
तो सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके इंप्रेस को संस्थापित कर सकते हैं
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए
कृपया इस वेबसाइट पर उपलब्ध लिनक्स उबंटु ट्यूटोरियल का अनुकरण करें और इस वेब साइट पर दिए गए निर्देशों का अनुकरण करके लिबर ऑफिस सूट डाउनलोड करें
लिबर ऑफिस सूट के पहले ट्यूटोरियल में विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं
याद रहे जब संस्थापन कर रहे हों इम्प्रेस का संस्थापन करने के लिए कंप्लीट ऑप्शन का उपयोग करें
यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट पहले से ही संस्थापित हैः आप अपनी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में एप्लिकेशंस ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर आफिस पर क्लिक करके और फिर लिब्रियोफिस ऑप्शन पर क्लिक करके लिबर ऑफिस इंप्रेस पा सकते हैं
विविध लिबर ऑफिस घटकों के साथ एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है
लिबर ऑफिस इंप्रेस को ऐक्सेस करने के लिए नए डायलॉग बॉक्स में प्रेजेंटेशन घटक पर क्लिक करें
क्रिएट पर क्लिक करें
यह मुख्य इंप्रेस विंडो में एक खाली डॉक्युमेंट ओपन करेगा
अब इंप्रेस विंडो के मुख्य घटकों के बारे में सीखते हैं
इंप्रेस विंडो में विविध टूलबार्स हैं जैसे- टाइटल बार मेन्यू बार
स्टैंडर्ड बार फॉर्मेटिंग बार और स्टेट्स बार
हम टूलबार्स के बारे में सीखेंगे जैसे ही ट्यूटोरियल्स आगे बढ़ेंगे
हम अपनी पहली प्रस्तुति पर कार्य करने के लिए तैयार हैं
अब फाइल बंद करें
एप्लिकेशंस पर जाएँ आफिस पर क्लिक करेंफिर लिब्रियोफिस इम्प्रेस पर क्लिक करें
फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करें
रिकमेंडेशन ओएफ आ स्ट्रैटेजी चुनें और अगले बटन पर क्लिक करें
सिलेक्ट आ स्लाइड डिजाइन ड्रॉप डाउन में प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स चुनें फिर ब्लू बॉर्डर चुनें
सिलेक्ट एएन आउटपुट मीडियम फील्ड में ओरिजिनल चुनें
अगले बटन पर क्लिक करें
यह स्लाइड ट्रैंजिशन बनाने के लिए स्टेप है
सभी ऑप्शन्स को छोड़ दें जैसे वे हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करें
व्हाट इस यूर नामे फील्ड में आप अपना या अपनी संस्था का नाम लिख सकते हैं
मैं आ1 सर्विसेज टाइप करूँगा
व्हाट इस थे सब्जेक्ट ओएफ यूर प्रेजेंटेशन फील्ड में बेनिफिट्स ओएफ ओपन सोर्स टाइप करें
नेक्स्ट पर क्लिक करें
यह स्टेप प्रस्तुति का वर्णन करता है
सभी ऑप्शन्स डिफॉल्ट रूप से चुनित हैं
कुछ भी न बदलें
वे प्रस्तुति के लिए सैम्पल हैडिंग हैं
क्रिएट पर क्लिक करें
आपने अब लिबर ऑफिस इंप्रेस में अपनी पहली प्रस्तुति बना दी है
अब हम देखेंगे कि प्रस्तुति को सेव कैसे करें
फाइल और सेव पर क्लिक करें
सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा
हम इस फाइल को सैंपल इम्प्रेस के रूप में सेव करेंगे
और सेव बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि इंप्रेस ओपन डॉक्युमेंट फॉर्मेट एक्सटेंशन odp के साथ सेव होगा
अब हम फाइल बंद करेंगे
प्रस्तुति को बंद करने के लिए फाइल और क्लोज़ पर क्लिक करें
आगे सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वॉइंट प्रस्तुतिकरण के रूप में लिबर ऑफिस प्रस्तुतिकरण को सेव कैसे करें
हम फाइल और ओपन पर फिर से क्लिक करके और सैम्पल इंप्रेस चुनकर सैम्पल इंप्रेस प्रस्तुतिकरण प्रेज़ेन्टैशन ओपन करेंगे
डिफॉल्ट रूप से लिबर ऑफिस इंप्रेस डॉक्युमेंट को ओपन डॉक्युमेंट फॉर्मेट में सेव करता है
प्रस्तुति को माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वॉइंट में सेव करने के लिए फाइल और फिर सेव एएस पर क्लिक करें
फाइल टाइप में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट चुनें
फाइल को सेव करने के लिए स्थान का चुनाव करें
सेव बटन पर क्लिक करें
कीप करेंट फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें
फाइल पीपीटी के रूप में सेव हो गई है
फाइल और क्लोज पर क्लिक करके फाइल को बंद करें
आगे हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावरप्वॉइंट प्रस्तुति लिबर ऑफिस इंप्रेस में कैसे ओपन करें
फाइल और ओपन पर क्लिक करें
पीपीटी के लिए ब्राउज़
जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं
फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें
अंततः हम सीखेंगे कि लिबर ऑफिस इंप्रेस प्रस्तुति को पीडीएफ फाइल के रूप में कैसे एक्स्पोर्ट करें
पीडीएफ ऑप्शन्स डायलॉग बॉक्स में फाइल और फिर एक्सपोर्ट एएस पीडीएफ पर क्लिक करें एक्स्पोर्ट बटन पर सभी ऑप्शन्स को क्लिक करें
फाइल नेम फील्ड में सैंपल इम्प्रेस टाइप करें
सेव इन फोल्डर फील्ड में स्थान चुनें जहाँ आप फाइल को सेव करना चाहते हैं और सेव पर क्लिक करें
डॉक्युमेंट अब डेस्क्टॉप पर पीडीएफ फाइल के रूप में सेव हो गया है
अब हम लिबर ऑफिस इंप्रेस पर ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं
संक्षेप में जो हमने सीखा
लिबर ऑफिस इंप्रेस का परिचय
इंप्रेस में विविध टूलबार्स
नई प्रस्तुतिप्रज़ेन्टैशन कैसे तैयार करें
एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण के रूप में सेव कैसे करें
एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण को ओपन कैसे करें
और इंप्रेस में पीडीएफ डॉक्युमेंट कैसे एक्स्पोर्ट करें
इस व्यापक नियत कार्य का अभ्यास करें
पहली स्लाइड में समान टेक्स्ट लिखकर एक नया डॉक्युमेंट ओपन करें
इसे एमएस पॉवर पॉइंट डॉक्युमेंट के रूप में सेव करें
फिर बंद करें
अब हमारे द्वारा देखी गई फाइल को फिर से ओपन करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित हैआईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद